एक कार भी खड़ी हुई है। दो बाइक भी है। एक बाइक पे आदमी जा रहा है।

इस तस्वीर में तीन लोग भी दिखाई दे रहे हैं गेट का नंबर चार है।

मस्जिद के बाहर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

उ झंडे नजर आ रहे हैं।